इस तस्वीर में हमें एक इमेज दिखाई दे रही है इमेज में यहां पर कुछ मूर्तियां लगी हुई है मूर्ति --

गोल्डन कलर की है ये एक मंदिर में रखी हुई है मंदिर का कलर पिंक ब्लू येलो ऐसे सारे कलर्स के बना हुआ है उसके अलावा हमें यहाँ पे पेड़ प पौधे दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पेड़ और पीछे हमें आसमान--